यह मेरे गाँव में सड़क के किनारे ही एक जगह पे बोहोत सारी हरयाली है। यहाॅं पे बोहोत घास फूश है और यहाॅं पे कुछ पेड़ पौधे भी है।

यहाॅं बोहोत से जने बैठे हुऐ हैं और यहाॅं पे बोहोत बड़े बड़े डब्बे भी हैं। एक ग्रीन कलर का टब भी है और सभी लोग यहाॅं मछली बेच रहे हैं और एक तराजू भी रखा है।

यह मेरे गाँव से एक रेल गुजर रही है और यहां पर बहुत ही पहाड़ जैसा दिख रहा है हरयाली भी है।

यह एक जिम सेंटर है यहा पे बहुत सारी मशीनें है बहुत सारी लाइट जल रही है और यह बहुत बड़ा हॉल है।

और यहाँ पे दो तीन विंडो और गेट भी है और यहाँ पे जिम की मशीन रखी हुई है।

यहाॅं पर कुछ चीज़े गाड़ी वगेरा आपको सर्विस करानी है तो आप सर्विस करा सकते हैं।